बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं।

घर की छत पर सफेद रंग की पानी की--

ये एक तालाब है तालाब में--

और एक पेड़ सामने दिखाई दे रहा है।

और स्टेज के दोनों तरफ सीढ़ियां --

रखे हुए हैं गिलास को एक दूसरे के ऊपर बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है।

दे रही है और कुछ पत्थर से दिख रहे हैं।